ये चित्र हैं एक चर्च दिखाई दे रही हैं और--

ये एक ब्रिज की है जिसमें एक बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ हा पर काफी बड़ी लाइटस् लगी हुई है।

ये चित्र में बैंक दिख रहा हैं और यहाँ पर शिशे का दरवाजा हैं बाहर पोस्टर लगा हुआ हैं।